यहां दृश्य हमें काफी अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है।

आं ऑटो के पास में हमें तीन चार लोग दिख रहे हैं यह ऑटो सफे अ--

यहां हमें दो फोर व्हीलर दिख रही है एक सफेद और एक कत्थई--

इस चित्र में हमें यहां एक सुंदर बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और खिड़की पे हमें आप प नीले रंग के ही परदे दिखाई दे रहे हैं।